ओ अपना पैर ऊपर की और उठाये हुआ है और रूम मे एक खिड़की है जिसमे एक पर्दा लगा हुआ है और एक दुसरे तरफ दीवाल पे एक घड़ी लगी हुई है।

और वो नाव के हँ हँ हैंगर को हाथ मै लिवे --